एक टेबल फैन रखा हुआ है मोबाइल का एक बोर्ड बना हुआ है।

और ट्रक ने कुछ सामान पकड़ रखा है।

और एक लाइट लगी हुई है।